ये देखने में तो काफी बड़ा हॉल लग रहा है जिसमे व्यक्ति काफी

और जमीं भी बिलकुल सूखी हुई दिखाई दे रही है। ये दिया गया है जिसपे सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। काफी अच्छा लग रहा है।

ये एक कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय फ़ोटो है जिसपे सभी स्कूल विस्कूल बंद है।

अब पानी भी इनकी तरा रंग बिरंगा होकर ऊपर नीचे आ रहा है | देखने पे काफी अच्छा लग रहा है और एह व्यक्ति इनको देख रहा है जो बोहत ही मनभावन लग रहा रहा है | अच्छा है।